और यहाँ पे मतलब देखा जा रहा है मतलब एक एक जो अथी स्टाफ है जो मतलब व्हाइट कलर के कपड़ा पहने हुआ है ऊपर से उसमें टोपी-वोपी लगा हुआ है मतलब पहना हुआ है पूरा सेफटी से कपड़ा यहाँ बिजली की तार है जो इसको मतलब जोड़ रहे हैं।

की है और एक लड़का भी है एक मैम भी है जो मतलब --